यहां पर मुझे पर्दा भी दिखाई दे रहा है जो की रेड कलर का है।

इस तस्वीर में बहुत सुंदर सा नजारा दिख रहा है।

यहां पर एक घर है जो कि पूरा पूरा बैंबू से बना हुआ है।

मुझे यहां पर बहुत सारे लकड़ी का सामान भी दिखाई दे रहा है।

यहां प बहुत सारा चेयर्स भी है जो की वाइट कलर का है।

यहां पे कुछ घर हे जो कि पुरा का पुरा बेम्बो से बना हुआ है और उसका छत भी पाम लीफ से बना हुआ है।

ट्री ग्रीन कलर का है।

और उसके किनारे में भी बहुत सारा पत्थर है।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

यहां पर एक पोज भी है।

यहां पे बहोत सारा वायरस हैं।

जीस तस्वीर में एक बहुत सुंदर सा नजारा दिख रहा है।

और जो इसका छत है वो पूरा टीना से बना हुआ है जिस पे थोड़ा जंग लग गया है।

छत है वो पूरा पूरा लोहा और टीना से बना हुआ है।

यहां पर शेल्व्स भी है जो की रेड कलर का है ये पूरा का पूरा लोहा से बना हुआ है।

बहुत सा वायर्स लगाया गया है।

दरवाजा पूरा का पूरा लकड़ी का बना हुआ है वह भी ब्लैक कलर का।

मुझे इस तस्वीर में बोहोत सुंदर सा नजारा दिख रहा है।

में बहोत सा खाने पीने का सामान रखा गया है।

इसका छत भी पूरा का पूरा पॉम लीव बना हुआ है।

इस पे बहुत सारा प्लांट्स उगा हुआ है।

और उसपे वाइट कलर का कर्टन भी लगाया गया है।

और बहोत सारा बॉक्स रखा गया है।

उसका अंदर बहोत सारा वाइंस रखा गया है।

उसका ऊपर निशा इलेक्ट्रॉनिक्स और बहुत कुछ लिखा हुआ है।

मुझे यहां पे एक आदमी दिखाई दे रहा है जिसका चेहरा भी क्लियर नहीं है।

इसका खिड़की और दरवाजा पूरा शीशा से बना हुआ है।

यहां पर मुझे एक लाइट बल्ब भी दिख रहा है।

यहां पर मुझे बहुत सारा वायरस भी दिख रहा है।

इस तस्वीर में बहुत सुंदर से जगह दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में बहुत सुंदर दिख रहा है जो बहोत बड़े बड़े पहाड़ है।

और यहां पर एक बहुत बड़ा सा ब्रिज भी है जो कि पूरा का पूरा सीमेंट से बना हुआ है।

यहां पे एक नदी भी है और उसके किनारे बहोत सारा पत्थर भी है।

यहां पर एक गोल्डन पैगोडा ऐसा कुछ चीज भी है।

पाम लीफ से बना हुआ है।